और काफी बुक्स रखीं हुई है सामान रखा हुआ है और टेबल पे एक कॉपी रखीं हुई है और एक पैन रखा हुआ है एक कॅल्क्युलेटर रखा हुआ है।

यह पिक्चर एक सलून की है जिस की दीवार रेड व्हाइट कलर की है दो व्याक्ति है।

यह यह पिक्चर एक बुक स्टेशनरी की है जिसमे शॉपकिपर क ह --

यह पिक्चर एक पार्क की है जिस में झूले पर जेंट्स महिलाए और कुछ बच्चे झूल रहे है।

यह पिक्चर जिम हॉल की है जिसमे एक लड़का खड़ा हुआ है एक पिछे खड़ा हुआ है।

जिम मे मशीन लगी हुई है और दीवार पर परदे लगे हुए है।

यह पिक्चर में चारो तरफ काफी पेड़ लगे हुए है ये बौद्ध जी का मंन्दिर है जिसमे तीन मूर्ति रखी हुई जिसमे बिच में बौद्ध जी की मूर्ति रखी हुई है

यह पिक्चर में एक व्यक्ति अंदर की और जा रहा है और एक महिला बैठी हुई है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिस में लिखा हुआ है एल एस --

बाहर एक स्टॉल रखा हुआ है एक बकेट रखी हुई है साइड में एक मां सीता करके शॉप है जिससे वहां काफी सारे पंखे रखे हुए है।

ये काफी लोग पीछे खड़े हुआ है और हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुआ है चारों तरफ एक बिल्डिंग है एक छोटा सा बचा साइकिल चला रहा है।

यह पिक्चर एक बॉयज सैलून की है जिसमें एक व्यक्ति है जो की दूस एक व्यक्ति की हेयर स्टाइल बना रहा है।

यह पिक्चर एक बुक स्टेशनरी की है।

यह पिक्चर किसी विद्यालय की है जिसमे व्हाइट कलर की ड्रेस में लड़के खड़े हुवे है लाइन से आगे दो टीचर खड़े हुवे है।

यह पिक्चर किसी रेस्टोरेंट की है जिसमें एक व्यक्ति फोन लेके बैठा हुआ है चेयर पे।

और लेफ्ट एंड राइट साइड दो व्यक्ति बैठे हुए हैं थोड़ी दूरी पर।

यह पिक्चर किसी बाहर की शॉप या रेस्टोरेंट की है।

जैसे साइकिल मशीन है।

रनिंग मशीन है और डंबल्स भी रखे हुए है एक व्यक्ति है जोकि रनिंग मशीन के ऊपर रनिंग कर रहा है।